file extensions पर स्पोकन tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: कम्प्यूटेशनल chemistry programmes जैसे: gamess gaussian mopac nwchem आदि के लिए input files तैयार करना
और gamess और gaussian सॉफ्टवेयर से उत्पन्न हुई output files उपयोग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखना और ir spectrum की गणना करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os version 1404
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको avogadro interface से परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
इस tutorial के लिए आवश्यक उदाहरण files code files में the गयी हैं
download करें और उन्हें desktop पर सेव करें
यहाँ मैंने avogadro window खोल ली है
insert fragment library उपयोग करके build menu से benzene अणु load करें
tool bar से autooptimization tool उपयोग करके geometry को optimize करें
extensions menu पर click करें
avogadro उपयोग करके हम प्रसिद्ध क्वांटम codes के लिए निम्न input files तैयार कर सकते हैं जैसे:
gaussian विकल्प पर click करें एक graphical data input dialog box खुलता है
अब मैं दिखाती how कि gaussian program के लिए input file कैसे बनती हैं
हमें dialog box में प्रदर्शित आवश्यक फीचर्स भरने हैं
avogadro अपने आप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की गणना नहीं कर सकता है
अब benzene अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाने के लिए एक input file बनाते हैं
gaussian input dialog box में शीर्षक में benzene hyphen mo type करें
calculation drop down से frequencies चुनें
आप dialog box के नीचे input file का प्रीव्यू देख सकते हैं
जैसे ही आप विकल्प बदलेंगे यह अपडेट होगा
generate button पर click करें
save input deck dialog box खुलता है
बनी हुई gaussian input file dot com extension के साथ सेव होगी
file का name benzene type करें location में desktop चुनें save button पर click करें
file benzene com नाम से desktop पर सेव होगी file को gedit में खोलें
अब इस file को gaussian सॉफ्टवेयर programme के लिए input file की तरह सेव किया जा सकता है
gaussian सॉफ्टवेयर के बारे में
gaussianकम्प्यूटेशनल chemistry के लिए computer programme है
यह gaussian inc द्वारा बनाया और licensed किया गया commercial सॉफ्टवेयर है
avogadro window पर वापस जाएँ dialog box back करें
अब देखते हैं कि gamess programme के लिए input file को कैसे तैयार करते हैं
एक नयी window खोलें tools menu से new पर click करें
draw tool उपयोग करके water मॉलिक्यूल बनाएं element को oxygen करें
panel पर click करें autooptimization tool उपयोग करके geometry को optimize करें
extensions menu पर click करें submenu से gamess input generator चुनें
gamess input dialog box खुलता है basic setup और advanced setup दो tabs हैं
आवश्यक जानकारी भरें जैसे हमने gaussian input fill के साथ किया
basic setup में हम calculate field में equilibrium geometry चुनेंगे
rhf restricted hartee fockवेव function को निर्धारित करने के लिए method of अप्रोक्सिमेशन अंदाज़ा लगाने का method है
चूँकि water बहुत छोटा अणु है हम basis set में 631g d p चुनेंगे
gas फेज़ में singlet क्योंकि सारे electrons युग्मित हैं
water neutral उदासीन अणु है अतः chargeneutral होगा
ऑप्टिमाइज़ेशन को नियंत्रित करने हेतु कुछ अधिक parameters जोड़ने के लिए advanced setup पर click करें
यदि आप functions का set बदलना चाहते हैं तो basis पर click करें
data पर click करें
title में watermo type करें
point group को cnv करें
order of principal axis को 2
अभी के लिए हम default parameters को ऐसे ही रखेंगे
generate पर click करें save input deck खुलता है
default रूप से file extension dot inp है
file का name water type करें
file location में desktop चुनें save button पर click करें
gamess input file desktop पर water inp नाम से सेव हुई है
about gamess gamess के बारे में
gamess का मतलब: general atomic and molecular electronic structure system सामान्य परमाण्विक और आणविक electronic संरचना system
यह ऐकडेमिक और industrial users दोनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है
संस्थापन और download के बारे में जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है
अब हमने gamess और gaussian programmes के लिए input files now ली हैं
ये input files सम्बंधित programmes में लोड होने के लिए तैयार हैं
दर्शक कृपया ध्यान दें: gaussian commercial सॉफ्टवेयर है अतः input फाइल load करने हेतु interface दिखाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ
पहले उल्लिखित की तरह gamess free सॉफ्टवेयर है
इच्छुक load दिए link से gamess सॉफ्टवेयर download कर सकते हैं
मेरे पास desktop पर gaussian और gamess की कुछ output files हैं
मैंने इन files को इस tutorial के साथ code files में दिया है
अब इन output files को avogadro में देखते हैं
एक नयी avogadro window खोलें
tool bar में open icon पर click करें
file location पर जाएँ benzene log चुनें
file खुलती है हम panel पर benzene की संरचना देख सकते हैं
benzene log को gaussian उपयोग करके बनाया गया था
यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और cc ch bond stretching के बारे में जानकारी रखता है
कभीकभी log file orbital की जानकारी नहीं भी दिखा सकती है
उस case में कोड file में दी गयी fchk file खोलें
orbital देखने के लिए सूची से orbital name पर click करें
यदि आप ऑर्बिटल्स की दिखावट बदलना चाहते हैं तो display types में surfaces विकल्प के आगे वाले स्पेनर सिंबल पर क्लिक करें
surface setting dialog box में opacity को बदलने के लिए slider को drag करें panel को देखें
render drop down में तीन विकल्प हैं fill lines और points
default रूप से ऑर्बिटल्सfill की तरह दिए गए हैं
lobes lobes के रंग को बदलने के लिए भी एक विकल्प है
positive और negative विकल्प के आगे color tabs पर click करें
select color dialog box खुलता है
चयन के लिए किसी भी रंग पर click करें ok button पर click करें
panel को देखें ऑर्बिटल्स के रंग अब बदल गये हैं dialog box बंद करें
संरचना से ऑर्बिटल्स को हटाने के लिए display types में surfaces विकल्प को अनचेक करें
vibrational frequencies देखने के लिए vibrations टैब पर click करें
vibration window में सूची से किसी भी frequency आवृत्ति पर click करें
window में नीचे start animation button पर click करें
panel को देखें cc और ch bonds की stretching एनिमेट होती है
हम संरचना के लिए ir spectrum भी देख सकते हैं
show spectra पर click करें
spectra visualization window खुलती है यह benzene का गणना किया हुआ ir spectrum दिखाता है
एक नयी window खोलें gamess programme उपयोग करके water मॉलिक्यूल के लिए बनी log file खोलें
log file water और मॉलिक्यूलर orbital जानकारी की संरचना के साथ खुलती है
सूची से orbital के name पर click करें panel पर orbital दिखता है
सारांश में
इस tutorial में हमने सीखा कम्प्यूटेशनल chemistry programmes जैसे gamess और gaussian के लिए input files तैयार करना
benzene और water मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखना
gaussian से बनी log files उपयोग करके अणुओं के ir spectrum की गणना करना
assignment में दी गयी code files से benzene अणु के लिए log file खोलें
सूची से कोई भी मॉलिक्यूलर orbital दिखाना
lobes का रंग और प्रदर्शन बदलना image को jpeg format में बदलना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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट जया द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं _____ आपसे विदा लेती हूँ